देख सकते हो क्लीनिक है ये क्लीनिक में एक अह एक डॉक्टर है जो लेडी डॉक्टर है जो एक व्यक्ति के इंजेक्शन लगा रही है।

खाने की मछली एक कांटा दो कांटा वाली मछली बाजू में देखो की घंटी है घंटी की शॉप है।

चेंबर है जो कि एक ऑफिस है एक ऑफिस में देखो कि सीलिंग पूरी व्हाईट कलर के पंखे लगे हुए हैं नीले कलर के पंखे लगे हुए--

देख सकते हो कि एक स्कूल है स्कूल की कैंपस में कुछ लोग बैठे हुए हैं आजू बाजू देखो कि पूरा दूर दूर तक का--

देख सकते हो के एक घर है घर के सामने एक और घर है जहां देखो क्यों किराए से घर चलते है सामने।

वो देखो की टाइस ही टाइस बिछी हुई है हर जगह टाइस ही टाइस रखी हुए है कुछ लोग हैं जो टाइस उठा रहे हैं ओ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

देख सकते हो एक टापू है टापू के आजू बाजू देखो कि दूर दूर तक का बड़े बड़े पहाड़ियां वाले टापू हैं।

झील है देखो कि बहोत सारे पानी भरी झील है उसके अंदर देखो को बहोत से पेड़ लगे हुए हैं देखो कि दूर दूर तक का उसमें झील है।

बाजू में साइकिल देखो कि रेंजर साइकिल है और सामने ऑफिस में दुकांठी पंखे लगे हुए हैं टाइल्ससिंग लगी हुई है देखो की--

देख सकते हो कि एक अस्प अ स्कूल है स्कूल के बाहर देखो कि चेंबियर में बहोत सारा सुन सपाटा रखा हुआ है रोड बाहर कचरा रखा हुआ है बहोत सारा।

बस है बस के सामने देखो बोहोत सारे लोग बस में ओवरलोड खरे हुए हैं वो देखो की बस में एक प्रेस वाला खरा हुआ--

मेन रोड है खड़ी हुई बस देखो पुलिस वाले जांच कर रहे है वो देखो बहुत सारे लोग खड़े हुए--

देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन के अंदर देखो की बहोत सारे लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं ट्रेन का आजू बाजू देखो कि लोग बैठे हुए--

देख सकते हो सीताराम के फूल की दुकान है जहां देखो के समोसे मिलते होंगे समोसा चाट--